और यहां पे काफी सारे सर्टिफिकेट भी लगे हुए हैं को भी यहां पे पड़ी हुई है लाइट लगी हुई है यहां पर मशीन भी रखी हुई है यहां पर चेक अप करने --

यहां पे मैं एक मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है और जहां पे इस फोटो में मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे मुझे एक चक्की ये कंपनी में चक्की लगी हुई उसका फोटो दिखाई दे रहा है।

मे बी यहां पे नए बहुत अच्छा शानदार फोटो देख पा रहा हूं जहां पे मुझे फोटो में दिख रहा है कि यहां पर एक ये किसी अह रेस्टोरेंट के फोटो जहां पे टेबल्स और चेयर रखी हुई है।

और यहां से सब गाड़ियां जा रही है जिनका यहां पे टैक्स कट था और यहां पे बस भी मुझे दिखाई दे रही है कुछ यहां पे गाड़ी खड़ी हुई है जिनसे आदमी बाहर निकले हुए हैं।

मै भी यहां पे मैं बहोत अच्छा शानदार फोटो देख पा रहा हूं और जहां पे मुझे फोटो में देखने को मिल रहा है कि ये किसी मार्केट का फोटो जहां पर मार्केट में बहुत सारे यहां पे फल बेचने वाले--

और यहां पर दो लड़के खड़े हुए हैं जहां पर ब्लैक कलर की यहां पर चेयर भी है काफी बड़ी बड़ी टेबल भी जिसपे कांच की टेबल लगी हुई है और यहां पे ऐ_सी भी लगी हुई है यहां पर लाइट भी लगी हुई है।

यहां पे सभी गाड़ियों का टोल टैक्स कटता है और उसके बाद ही यहां से क्रॉस हो जाती है।

जिनपे पीले रंग का यहां पेंट लगा रखा है इन्होंने और पीछे में यहां पे बॉन्डिंग की हुई यहां पे बांस की डंडों से यहां पे इसकी घेरा बंदी की हुई है इस पार --

यहां पे इन्होंने इसकी सामने डेकोरेशन से व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के गुब्बारे लगा रखे हैं।

भी यहां पे मैं बहुत अच्छा शानदार फोटो देख पा रहा हूं और जहां पे फोटो मुझे देखने को मिल रहा है कि ये किसी काफी अच्छे रेस्टोरेंट का फोटो है जहां पे शायद बर्थडे पार्टी है।

यहां पर मैं बहुत अच्छा शानदार फोटो देख पा रहा हूं और जहां पे इस फोटो मुझे देखने को मिल रहा है कि यहां पे हीरो वर्कशाॅप शिवम हीरो के नाम से एक बाइक एजेंसी है।

ये देखने में बहुत अच्छा किसी कॉलेज का फोटो मुझे दिखाई दे रहा है ये किसी चीज का कॉन्टेंनेट रखा फोटो है जहां पे बहुत बड़ी कांच के शिशो की यहां पे बिल्डिंग बनी हुई है।

नीचे यहाँ फ्लोर पे टाइल्स बिछी हुई है और यहाँ पे दो गमले मुझे दिखाई दे रहे है।

एक हरे रंग का हर पेड़ है जिस पर हरी पत्ती है और एक व्यक्ति यहां पे मुंह पर मास्क लगाकर सड़क पर चल रहा है।

यहां पे मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है लगता है किसी यहां पे जंगल के बीच में ये जीना बना हुआ है जहां पे ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जैसे सीमा पर बना हुआ है।